पौधे वगैरह बो कर के रख दिए है चाय के पेड़ के जैसे--

सेम एज के हैं काफी बढ़िया लग रहा है सब अपने बड़ी बहन का जो उसके स्टेप को फॉलो कर रहे हैं और--

तार का हो सकता है या रोकने का हो सकता है।

यह एक मैदान है खेल मैदान कह सकते हैं।

यह एक वेटिंग हाल है काफी बढ़िया लग रहा है हल्का सा पतला पतला सोफा यहां पे बनाकर के रखे गए हैं सामने जो है यहां पे--

और गुलाब जो है हर चीज में यहां पे डेकोरेशन में शादियों में--

एस्केलेटर हमें दो ठो सामने दिखाई पड़ रहा है ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर जाने के लिए।

काफी बढ़िया की गई है शाम ता कैंडल लाइट डिनर चल रहा है।

एक आदमी अपने स्कूटर से जा रहा है वो इस मार्बल पे इसकी प्रतिबिंब जो है बन रही है।

और सारे जो बैच वाले हैं वो फोटो खिंचवा रहे हैं काफी खूबसूरत लग रहे हैं।

आस पास जो है एक कार खड़ी हुई है और बहुत सारी गाड़ियां अंदर पेट्रोल भरा रही होंगी।

यह एक आइसक्रीम पार्लर है यहाँ पे बड़े-बड़े डीप फ्रीजर रखे गए है टॉप एंड टाउन का जो आइसक्रीम यहाँ पे मिलता है।

यह एक मेंस कलेक्शन का शॉप है यहाँ बोहोत सारे महंगे महंगे कपड़े जो है रेमंड वैगैरा के यहाँ पे मिलता है यहाँ पे बहोत सारे जो है सूट पीस जो है --

यह एक दुकान हैं यहाॅं पे बहोत सारे खंड में अलग अलग तरह की--

बहुत अच्छी है कुछ लोग यह एन्जॉय कर रहे हैं।